कपड़ों की शॉप दिख रही है वहां पे जो रैकस हैवहां पे कुछ कपड़े रखे हुए दिख रहे है कुछ अलग-अलग अ जीन्स के भी कपड़े दिख रहे हैजींस ---

जो टी शोप दिख रहे उसके शटर्स दिख रहे हैं और वहाँ पे बक्से भी रखे दिखे रहे पत्थर का शेड़ बना हुआ है वा पे कुछ थेलिया लटकी हुई दिख रही है।

सामने एक मोटरसाइकल खड़ी दिख रही है दो बच्चे दिख रहे वहां पे एक भी एक छोटा-सा शोप दिख रहा है एक रास्ते पर एक बड़ा-सा गाड़ी जाता हुआ नज़र आ रहा है एक पेड़ दिख रहे है दिन का समय दिख रहा है।

वहाँ से अ कुछ लोग भी दिख रहे हैं और अम वहाँ पे एक रेलवे भी खड़ी दिख रही है रेड कलर की आसमान दिख रहा है पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

कुछ लोग दिख रहे है वहाँ पर लाइट दिख रहा है अ बड़े-बड़े पेड़ दिख रहा हैआसमान दिख रहा है उस बिल्डिंग का कलर लाल और व्हाइट जैसा है।

बाजू में से की सीढ़ियाँ दिख रही है ऊपर जाने के लिए। ऊपर भी कुछ लोग दिख रहे हैं नीचे भी यहाँ कुछ सामने लोग दिख रहे हैं। कुछ मोटरसाइकिले खड़ी दिख रही है। असमान दिख रहा है।

यहाँ पे सीमेंट का बना हुआ एक गोल तरफ कुछ है और उसके आजू-बाजु में पेड़ दिख रहे है वहाँ पर पीले कलर का बोर्ड भी है वहाँ कम्पाउन्ड भी बना है छोटा-सा वॉल है वहां अंदर जाने के लिए गेट दिख रहा है।

घर का कुछ दिख रहा है वहां पे बड़ी-सी घंटी लगी हुई दिख रही है और एक पुरानी घंटी दिख रही है सामने स्टील का ग्रिल दिख रहा है गमले दिख रहे है पौधे दिख रहे है।

पेड़ पौधे दिख रहे हैं आसमान दिख रहा है। यहाँ से एक आदमी जाता हुआ नजर रहा है। कंपाउंड का जो छोटा सा दीवार है वो भी दिख रहा है।

उस बगल में एक म शटर बंद दिख रहा है आसमान दिख रहा है दिन का समय दिख रहा है वहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है धुप आ रही है।